चित्र में मुझे तार कसी हुई बंबू पर दिखाई--

चित्र में मुझे फोटो लगी हुई दूल्हा और दुल्हन की दिख रही है।

ऊपर लगे हुए सरिये दिखाई दे रहे हैं।

समुद्र में चलती हुई नाव पर कई सारे लोग--

चित्र में मुझे शॉप को फूलों से सजाया दिख रहा है।